ढाबे के बाहर एक कार और मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है।

इस दृश्य में हमें गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें मैरिज पैलेस को फूलों और लाइटों से सजाया हुआ दिखाई दे रहा हैं।

नहर के साथ एक सड़क बनी हुई है।

यह दृश्य हमें पाठ का दिखाई दे रहा हैं।

झरने के पास कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें एक स्टेशनरी की दुकान का नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक खाली प्लाट नजर आ रहा है।

हॉस्पिटल में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।